देखिए ना कितना सुन्दर लग रहा है झंडवा वाला देखिए नहीं रहा है निचे से ऊपर से ऊपर दिख रहा है।

यहाँ पर देखिये प्लेट फारम है ये ये प्लेट फारम है और यहाँ पे बहुत सारे ट्रैन लगा हुआ है माल गाड़ी लगा हुआ है ये माल गाड़ी है यहाँ --

यहाँ पे देखिए ए .टी .एम. है ये इस को ए.टी .एम. बोल ते है हमलोग ए.टी.एम. मे ऊपर मे देखिए ये कितना अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे देख सकते है कितना मस्त लग रहा है।

बनाया बहुत क्वालिटी में मतलब पुराना है लेकिन इतना सुन्दर बनाया हुआ है और इतना अच्छा बनाया हुआ है की मत ही पूछिए बहुत अच्छा लगा रहा है देखने में इतना सुन्दर लगा है की मत पूछिये बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत इतना अच्छा है की मत पूछिए बहुत सुन्दर--

कितना अच्छा चीज सुंदर लग रहा है जो भी है स्कूल है यहाँ पे बना हुआ है जो भी हे या इतना अच्छा लग रहा है मत पूछिए बोहोत सुंदर है बोहोत अच्छा लग रहा है।

देख सकते हैं आप लोग कितना मस्त लग रहा है बहुत सुंदर है भी इतना अच्छा है कि मत पूछिए बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा है यहाँ पे कुर्सी पर टीचर बैठी हुई है लेकिन बहुत अच्छी लग रही है बहुत सुंदर।

ये मत पूछिए बहुत बड़ा धर्मशाला बना है लेकिन इतना अच्छा है इतना अच्छा क्वालिटी बना है मत पूछिए कुछ बहुत बढ़िया--

ऐ टावर की वजह से ऐसे होगा ये तो हम को लग रहा है टावर वाला ही है देखने में भी अच्छा ही लग रहा है।